ईंट का सामने में जो बरा सा बिल्डिंग है।

यहाँ में जो बोड करके दिखाई दे रहा है।

बीच में एक वैसा स्ट्रक्चर करके लंबा सा पोल लगाके है।

बाहर मे जो स्कूटी पार्क करके हैं।

ये यहां इन बच्चों लोग जो सब यू यूनिफॉर्म पहन के हैं।

पीछे में जो फोन नंबर में लिख के है।

ये दुकान के आसपास में और भी बहुत ज्यादा दुकान शॉप हैं।

मे दरी लगा के है।

साइड साइड में छोटा छोटा ग्रास और बरा बरा पेर है।

स्क्रीन में उसके सामने में एक ठो स्कूल है।

उसके ऊपर बीच में एक ठु खंभा है।

उसका सामने में उसको पकड़ के सफेद कलर का कपड़ा पहनकर बुड्ढा है।

तस्वीर में हमको चप्पल का दुकान दिखाई दे रहा है।

और घुसने से पहले दो स्टेप का सीरी है।